बहोत फ्रिज रखी हुई है यहां पे एक चेयर है और यहां पे बहोत सारा यहां पे सामान रखा हुआ है।

लगाए गए हैं नेशनल फ्लैग के और वहां पे एक आदमी दिख रहा है।

यहां पे रनिंग मशीन है वेट लिफ्टिंग जॉगिंग मशीन डंबल्स यहां पे --

और यहां पे बाजू बहोत सारे--

और यहां पे बहुत सारे बडडे कैप्स और बॉम्ब्स भी यहां पे रखे हुए है ब्लास्ट करने के लिए यहां पे नकली --

पेंट के छोटे बड़े साइज के डब्बों से यहां पे--

और यहां पे कार्टूंस में भी कुछ सामान रखा हुआ--

बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं डिवाइडर रोड के बीच में।